जो फ़तरों से और ईटों से बना है ।

इस पिक्चर मे बहुत से लोग दिख रहे है जो म्यूजिक बैंड है।

यह एक पेट्रोल टैंक है जो पेट्रोल पम्प पे एक टैंकर खड़ा है जो पेट्रोल को पेट्रोल पम्प मे सप्लाई कर रहा है।

यह एक ऑफिस की पिक्चर है जहा एक ऑफिस एक केबिन है वहा एक किसी डाइड इंसान की फ्रेम लगी हुई है।

एक बेढ के अपना फ़ूड जॉइन्ट कर रहा है एक ऑर्डर ले रहा है अंदर खाना बन रहा है।

एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप दिख रही है। ]

यह एक मंदिर का व्यू हैं जहा लोग जा रहे हैं दर्शन करने यह मंदिर का टॉप का व्यू है यह शेड के नीचे प्रशाद की है बहुत सारे लोग जा रहे है।

और एक आदमी वो भी पढ़ाई कर रहा है।

यह एक ब्रिज का व्यू है जहा ब्रिज दिख रहा है बहुत पुराना सा ब्रिज दिख रहा है नदी जा रही है यहा आस पास बोहत ग्रीनरी है।

यह एक टमाटर है इसमे बहुत सारे टमाटर है कुछ बहुत घनदे से है कुछ कुछ अच्छे है पूरे रेड़ इन कलर है।